एक संगीत सिखाने वाला इंस्टीट्यूट है जिसमें कि संगीत बादक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं ।

पीछे में एक झूला भी है जो झूला ब्लैक कलर का है ।

और फूल की दुकान के पीछे दीवाल में बहुत सुंदर मधुवनी पेंटिंग किया हुआ है।